सामने की स्मार्ट बोर्ड है जिसमें मैप बना हुआ है और सामने बहुत सारे लड़का लड़की बैठे हैं जो की किताब कॉपी लेकर और एक बैग भी दिख रहा है जो की रेड कलर का है।

सामने एक चबूतरा भी है।

पाइप का कलर ब्लैक है और नीचे बहुत छोटे छोटे घास है बगल में फूल है जो की गुलाबी कलर --

सामने बहोत सारे आदमी भी खड़े हैं एक आदमी के शर्ट का कलर व्हाइट है।

सामने दो आदमी दिख रहे हैं जो कि हेलमेट लगाए हुआ है हेलमेट का कलर ब्लैक है।

सामने न्यू अनूप साइकिल लिखा हुआ है।

बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं एक पुलिस वाला भी है।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

अ सामने आदमी है जो की टोपी पहना है और दो साइकिल खड़ी है साइकिल का कलर रेड है।

सामने एक आदमी है जिसका शर्ट का कलर पर्पल है।

इस फोटो में हमें बहोत सारे टेबल दिख रहे हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं।

सामने एक औरत है जो कि थैला लेकर खड़ी है उसका शूट का कलर नीला है।

सामने एक गमला हैं गमला का कलर रेड है उसमें फूल लगा हुआ हैं।

यह एक बस स्टैंड का फोटो है जहां दो चार पेड़ दिख रहे है जो कि ग्रीन कलर के है।

हमने एक आदमी और है जिसका टी_शर्ट का कलर ब्लैक और पेट का कलर ब्लैक है।

सामने दो मूर्ति भी दिख रही है मूर्ति का कलर वाइट है।

यह एक पंडाल का अंदर का फोटो है पंडाल का कपड़ा का कलर व्हाइट --

टेबल भी है टेबल के ऊपर छोटे छोटे गुलदस्ते रखे हुए हैं।

एक टायर दिख रहा है टायर का कलर ब्लैक है और बहोत सारा चदरा लोहे का रखा हुआ है।

और सामने दो झूला है एक झूले का कलर पीला एक झूले का कलर ब्लैक है।